इसके ब्लॉकस देख सकते है कितने जबरदस्त है।

इसमें देख सकते हैं कुछ गरीब गरबा भी आए हुए हैं ये एक पूजा के लिए लगी गई है ये तो किसी की बारात आ रही है इसमें --

यकीनन इसमें एक पूजा ही होगी इसमें लोग बाहर आए हैं तशरीफ लेकर आए हैं अभी होना स्टार्ट शुरू हो चुकी होगी --

सब सामान को ये ठीक करते हैं फिर इसको भेज देते हैं जिधर होती है--